और मास्क भी हैं दिन है और एक इंसान फोन में बात कर रहा--

तस्वीर में बहुत सारा इंसान है।

पक्का वाला घर है और बड़ा सा एक पेड़ है।

और गाम दो ठो है और बंबू भी पान छे है और तोता भी है।

और एक दो पेर भी है और ग्रास भी दिखाई दे रहे--

और व्हाइट कलर का रस्सी गाय का नाक से निकाल के हैं।

और दरवाजा भी है और खिड़की भी है।

और फ्रिज कुछ भी दिखाई दे रहा है।

डब्बा लोग भी बहुत सारा है और सैनिटाइजर भी है और--

और आगे में बस भी दिखाई दे रहे।

एक माइक भी है और लाइट जल के भी है।

लाइट भी ग्रीन कलर का जल के है।

और पर्दा भी है तीन ठो।

और येलो कलर का वायर भी है और उसके पास एक इंसान है।

और बहुत सारा इंसान लोग बैठके है और उठके भी है।